यह एक तालाब है तालाब में है से बहुत सारे पानी है।

एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं।

दुकान में आदमी बैठे हुए हैं दो। एक वाइट कलर का टी सर्ट पहने हुआ है एक रेड कलर का।

रैक बनाकर बहुत सारे बुक रखे गए हैं और यहां पर बहुत सारे आदमी भी है।

यहाँ पे बॉउंड्री है घर है बहुत सारे खिड़की दरवाजा भी है। दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं।

बहुत सारे किराना दुकान का सामान भी रखे गए हैं।

यहाँ पे एक गाड़ी है।

दो स्टेन भी है। एक स्टेन आदमी का सामने खड़ा रखा हुआ है।

यह एक हाउस ढाबा है और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

पेड़ को व्हाइट कलर से जड़ पर पेंट किया हुआ है।

यह एक घर है घर में दरवाजे भी है एक खिड़की भी है और रेलिंग भी मारा गया है।

यहां पे एक रूम में योगा कर रहे हैं। और यहां पे खिड़की दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर आंखों का इलाज किया जाता है और मशीन रखा गया है इलाज करने वाला।